रोशनी आ रही वैसे दिखयी दे रहा है फ़ैन् दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पर --

मुझे यहाँ पर टेबल पर रखी हुई एक दिखा रही है जिसमें चाय भी रखी हुई हैकॉफी दो कप रखे हुए हैं।